सबसे अच्छा झरना लगता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे आदमी आते हैं घुमने के लिए और इसे देख --

ये बहुत बढ़िया कोचिंग है ऐं यहाँ पे इंजीनियरिंग की तैयारी की जाती है।

यह बहुत बढ़िया जंगल है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घुमने के लिए देखने के लिए क्योंकि यहाँ ऊँचे-ऊँचे पहाड़ है और

पहाड़ों के बीच में नदी है बहुत लोग आकर बहुत अच्छी जगह है ढ़ेर सारे लोग आते है।

इंडिया का नंबर वन पेट्रोल पंप है इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ आते है फोर व्हीलर टू व्हीलर --

और ढ़ेर सारे न्यू न्यू गाड़ियाँ आते है इसमें यह बहुत बढ़िया पेट्रोल पंप है।

और यह बहुत अच्छी जगह है और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं इसे देखने के लिए क्योकि यह बहुत प्रसिद्ध है ।

यहाँ बहुत सारे चीज है बहुत बढ़िया-बढ़िया --